यहाँ पर हमें एक बहूत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग के निचे एक शटर हैं जो खुला हुआ है।

यहाँ हमे एक बहुत सुन्दर समुद्र दिखाई दे रहा है जिसके अंदर काफी बड़ी सी एक नाव एक बोट रखी हुई है जिसमे काफी सारे लोग बैठे हुए है नाव को बहुत अच्छीसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ऊपर डोर हमे बादलो में सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक लेडी ब्लैक कलर के कपड़े पहनी है उनके हाथ में चाय का एक कप है शेल्फ में काफी सारा सामान बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया गया है।

इसमें एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है रूम वाइट कलर से पेंट है इसको बहुत अच्छी तरह से स्टार्स और फूल-मालाओं के साथ डेकोरेट किया गया है रूम में एक रेड कारपेट बिछा है जिसपे कुछ लोग हमे खड़े दिखाई दे रहे हैं।

घर के सामने काफी सारे लोग खड़े है घर के साइड में हमें बहुत सारा हरा-भरा खेत दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर सा ये घर लग रहा है।

यहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर सा हरा-भरा पेड दिखाई दे रहा है बरगद का पेड यह शायद हो सकता है जिसकी कुछ शाखाएं हमें लटकी हुई दिखाई दे रही हैं।

बहुत सुन्दर सी जो है स्टॉल दिखाई दे रहा है स्टॉल पे एक फाव काउंटर है काउंटर पे दो बरनी रखी है जिसमे कुछ कुकीज़ है।

यहां पर हमे एक बहुत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है रूम पूरा व्हाइट कलर से पेंट है ऊपर काफी सारी लाइट्स है रूम जो है हेयर सलून की दुकान है।

ऊपर काफी सारे पंखे हमे लटके दिखाई दे रहे है नीचे रेड एंड ग्रीन कारपेट बिछा है और काफी सारी चेयर्स पे लोग बैठे हुए है।